यहां पे दो टेबल दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे दो नारियल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

आगे की तरफ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

बेड के ऊपर ब्लू कलर का एक बड़ा सा बॉल है।

एक ने ब्लू कलर का ड्रेस डाला हुआ है।

जिसमें से आधे औरत है आधे आदमी है।

एक आदमी बिल्डिंग के अंदर खड़ा हुआ है।

बिल्डिंग का कलर ब्लू तथा मल्टीपल कलर है।

यह एक पार्क है यहां पे लोग बच्चे खेलने के लिए आते हैं।

यहां पे एक टोकरी भी दिखाई दे रहा है।

दो आदमी बुलेट के ऊपर बैठकर कहीं जा रहे हैं।

यहां पे एक पेड़ भी है।

यहां कुछ आदमी जमीन पर चल रहे हैं।

दीवाल का कलर येलो है यहां पे छोटे छोटे पौधे भी हैं।

यहां पर एक पर्दा है जिसका मल्टीपल कलर है।

चार आदमी बैठे हुए हैं बाकी सब चल रहे हैं।

यहां पे दो लाइटें लगाई गई है।